ये एक ऑफिस है और ऑफिस पर खाने खाने कटे हुए हैं और ये ऑफिस पर यहाँ पर अपने कुर्सी के नीचे --

ये एक स्विमिंग पूल है और यहाँ पर --

और यहांँ पर सभी प्रकार के कॉस्मेटिक की दुकान है। यहाँ पर चूड़ियां और अन्य चीजें कॉस्मेटिक का चीजें मिलती हैं। यहाँ पर कुछ लेडीज ले रही हैं खरीद रही हैं।

ये पैरदान है और यहाँं पर काफी आरे पैरदान भी रखे हुए हैं हर तरह के रंगे-बिरंगे और यहाँं पर अन्य सीजें भी --

ये एक न नदी है और नदी पर ए दो नावें हैं और यहाँ बड़ी-बड़ी नावें है ये बोट है और यहाँ पर कुछ लोग बोट पर बैठे भी हैं।

एक प्लेट पर जलेबियाँ रखी गई है और जलेबी बहुत ही अच्छी सुन्दर और आकर्षित दिखाई दे रही है और अभी कढ़ाई से निकाली गयी है ये कढ़ाई के ऊपर ट्रे रखा हुआ है।

यह एक एक पंछी है और यह है।

डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट अधार अधार इनरोयलमेंट अपडेट सेंटर है। यहाँ पर अधार को अपडेट किया जाता है। या आधात का आधार कार्ड बनाया जाता है।

घर के अंदर एक मैदान के अंदर हैं और उनके खाने का भोजन भी रखा हु रखा गया है।

और यहाँ पर एक टेबल पर टेबुल के चारों ओर गुब्बारे लगा दिए गएँ हैं और उस पर केक भी रख दिया गया है दो खंड का और यहाँ पर काफी गेस्ट भी इकट्ठे हुएँ हैं और गिफ्ट भी लाए हुएँ हैं।

एक हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल के बाहर काफी सारी चेयरें पड़ी हुईं हैं और यहाँ पर कमरा है। जो अभी कमरा फ र कमरा अभी खुला हुआ है।